यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है । सड़क पे एक औरत आती हुई दिखाई दे रही है । औरत के हाथ में कुछ समान दिखाई दे रहा है ।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड के आगे बक्से रखे हुए दिखाई दे रहे है एक बोरी रखी हुई दिखाई दे रही हैबोरी के ऊपर भी--

एक लाल रंग का पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है । स्टेज काफी डेकोरेट हुई दिखाई दे रही है । यहां पर हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है ।

दो सीमेंट के दरवाजे बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके बीच में काले रंग का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है गेट के बगल में एक सफेद बिल्डिंग वो दिखाई दे रही है।

चद्दर दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद दिखाई दे रहा है । पास में एक टेबल लगी हुई दिखाई दे रही है जिसमें नीला रंग लगा हुआ है । एक गेट दिखाई दे रहा है ।

पीछे एक ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो की काले कलर का है ऊपर चद्दर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में कुछ सामान टंगा हुआ दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ के आगे दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

लाइटें दिखाई दे रही है दिल के आकार का शेप बना हुआ दिखाई दे रहा है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस पर कॉलेज मीडियम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बाहर काले रंग की सीढ़ियां दिखाई दे रही है।